बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं जिससे सजावट की गई है।

सीलिंग पे फैन लगे हुए हैं एक ए_सी लगी हुई है।

इस चित्र में एक रिक्शा दिखाई दे रही है जिस रिक्शा का कलर रेड है।

और एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।

उसके सेकंड फ्लोर पे एक खिड़की और दरवाजा दिखाई दे रहा है।

जैसे कद्दू गाजर मूली भिंडी वगैरा।

एक व्यक्ति येलो कलर की टी शर्ट पहनकर बैठा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे चट्टान दिखाई दे रहे हैं।

एक व्हाइट कलर की पार्क की हुई कार नजर आ रही है।

यहां पर बैनर लगाकर अमन बाइक रिपेयरिंग एंड सर्विस सेंटर लिखी हुई है।

ये खाली मैदान है जिसमे छोटे छोटे घांस उगे हुए है।

इस दुकान में जेंट्स के ट्राउजर टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे बोरे के बंदल बाध कर रखे हुए हैं।

बहोत सारे कपड़े सरिया कर रैक में रखे हुए हैं।

दीवार पे दो पेंटिंग लगे हुए हैं एक विंडो दिख रही है दो मरकरी लगे हुए हैं।

इस चित्रों में एक नेचर की तस्वीर दिखाई गई है।

वहा पर सीलिंग में बहुत सारे सीलिंग फैन लगे हुए हैं।

जैसे इजी के डब्बे दंत कांति पेस्ट के डब्बे--

जिसके ऊपर स्टनिंग जीनियस लिख कर स्कूटी और बाइक के बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

एक गेट लगी हुई है जिसके ऊपर पी पार्किंग की बोर्ड लगी हुई है।

चित्रों में एक मार्केट प्लेस की तस्वीर दिखाई गई है।

जहां पर एक चौक बनाकर उसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है।

एक बुड्ढी के बाल वाला दिख रहा है जिसके पास बहुत सारे स्वीट काटन्स हैं।

जिसके ऊपर रांची नगर निगम लिखी हुई है।